एक लेडिस अपने हाथों में पर्स लिए हुए और दूसरे हाथों में थैला लिए हुए मछली की खरीदारी या पूछताछ कर रही है।

किसी रोड का ये द्श्य दे रहा है जिसमे रोड की जो साइज़ है टू वे में बनी हुई है एक साइड जो है ऑफ़लाइन है एक साइड जो है डाउनलाइन है।

और इस रोड की बगल में एक बिल्डिंग भी बनी हुई दिखाई दे रही है जो किसी गवर्नमेंट की कार्यालय दिखाई दे रही है।

वृंदावन पोशाक केंद्र पंडित अर्जुन शर्मा मोबाइल नंबर इतना दिया गया है।

या फिर कुछ और ही मनाया जा रहा है और बैंक के अन्दर गोल्ड लोन इत्यादि का बैनर पोस्टर लगा हुआ है और कुर्सियां भी लगी हुई है।

जहां पर एक बहुत बड़ा गैलल भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है और उसके बगल में काफी सारे--

और अगल-बगल काफी सारे बड़े-बड़े वृक्ष लगे हुए हैं जो हरे हरे हैं और कुछ सूखे वृक्ष भी हैं।

साइकिल का यह ऑफिस दिखाई दे रहा हैं या फिर शोरूम भी बोल सकते बच्चों के चलने वाला साइकिल यानी रेंजर --

पंजाबी भाषा में लिखा हुआ एक बोर्ड टंगा हुआ है और बाहर में दो स्टेच्यू भी बना हुआ है।

उस गाड़ी के अंदर झुका हुआ है ऐसा लगता है कि किसी सामान को निकालने के काम को अंजाम दे रहा--

दाढ़ी भी बढ़ाए हुए हैं बाल बढ़ाए हुए हैं और हाथों में मोबाइल लेकर अपनी सेल्फी को लेने का कोशिश कर रहे--

और किसी घर के अंदर यह खड़ा हुआ है घर के कोने में दीवाल फैन भी चल रही है जो बिल्कुल स्पीड में चल रही है ये दिखाया गया है।

और एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने का काम करती हैं वहीं क्रेन मशीन यहां पर लगा हुआ है।